रोड के साइड से कुछ पेड़ों के पत्तिया दिखाई दे रहें हैं।

और अंदर जो कलर दिख रहा हैं वो गुलाबी हैं। दीवार --

और साइकिल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। तीन पहिए वाली है। कपड़े की दुकान है। जहाँ पे डमी ने कुछ ड्रेसेस पहने हुई है।